यहाँ पर पास पैसे जमा ने चासी होता है यहाँ पर बहुत से आदमी आकर पैसा जमा करते है और वहाँ से निकाल ते है इस घर में ए.सी. लगा हुआ है ।

उम् देवता देवी पर चढ़ाने के लिए लिया जाता है यह माला शादी विवाह में लिया जाता है यहाँ पे काफी सारे फूल भी --